यहाँ हम देख सकते है की एक लोहे का पाइप जिसपे दो बच्चे चढ़े हुए नजर आ रहे है एक बच्चा ऊपर की तरफ और एक निचे की तरफ हम देख सकते है की --

यहाँ पे दो लड़किया दिखाई दे रही एक लड़की ने काला कोट पहना हैं दूसरी लड़की ने टी शर्ट पहना हुआ है यहाँ पर टेबल के ऊपर हम देख सकते की नीले रंग के --

कई सारी चीजे रखी गई दिख रही है लाल कुर्सी रखी गई दिखती है एक कुर्सी के ऊपर काला बैग नस --